ऐसे ही खराब पड़ी हुई है।

बजमरे थे और लोग अ एन्जॉय कर रहे है और बैठे हुए है।

और नीचे हरे भरी पेड़ हरियाली।

घर बना रहा जीसका कस्ट्रक्शन शुरू है घर का --

चर्च पर चर्च में इशू प्रभु का फोटो लगा हुआ है।

यहा कुछ एक हाउसबोट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है पानी है तालाब है।

और रोड से थोड़ा ट्रैफिक नजर आ रहा है रोड पे जैसे अ कुछ गाड़ियाँ टू व्हीलर --

आती जाती नजर आ रही है और एक ऑटो नजर आ रहा है जाते हुए।

यहाँ एक बोट नजर आ रही है जो हॉउसिंग बोट जैसे दिखाई दे रही है।

ये एक बीच जैसा दिखाई दे रहा है समुंद्र जैसे और बाहर रेत --

और आजू-बाजू रॉक्स है पत्थर है।

वाटर पार्क जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

गाड़ी का शोरूम है जहां पे गाड़ी खड़ी हुई है।

स्कूल के सामने का बरामदा है और वहां पे कुछ तस्वीरें लगी हुई है।

माँ सरस्वती की फोटो है ब्लैकबोर्ड है तो सीधीसी बात है स्कूल ही हो --

यहां एक बड़ा सा हेलिफेंट नजर आ रहा है और एक --

और कुछ बैग्स रखे हुए है शायद यहा कोई रुकने के लिए आया हुआ है।